मिल्क पाल पार्लर लिखा --

और पाँच लोग इधर खड़ी है।

कुछ काम कर रहा है देख रहा है। और एक सीढ़ी है। लाइट है और कुछ दूर मे जाकर बैठे हुए है और लोग --

और लाइट भी जल रहा है कुछ --